उन्हें हेलमेट पहन रखा है और जूते भी पहन रखे है।

नीचे मार्बल बिछाया गया है तथा हॉल की दीवालो को सफेद रंग से पेंट किया गया है और उसमें घड़ी भी लगाई गई है।

कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही है तथा सामने एक ठेला भी दिखाई दे रहा है जिसपे कुछ खाने पीने का सामान रखे हुए हैं।

इस फोटो में कुछ दूर पर कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

यह एक फुटवेयर का मोल है जहां पर बहुत सारे जूते चप्पल दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक लाल कलर का कुर्ता भी टंगा हुआ है जिसके बगल में एक सीढ़ी भी रखी हुई है।

फोटो में कुछ छोटे-छोटे रूम दिखाई दे रहे हैं जिसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर एक्साइड केयर लिखा हुआ--

इसके पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग को पीले रंग से पेंट किया गया है एवं लाल रंग के रंग से इसके छज्जे को पेंट किया हुआ है।

नीचे कुछ आदमी भी बैठे हुवे तथा खड़े दिखाई दे रहे है सामने दो व्यक्ति फोटो खिंचवाते हुवे नजर आ रहा है।

इस फोटो में एक बड़े से होल के अंदर बहुत सारे गुम्बारे लटकाए गए है जिसमे से गुम्बारे का रंग लाल है।

इस नाव के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुवे नजर आ रहे हैं।

यह एक होटल का फोटो है जहां पर होटल बैजनाथ लिखा हुआ है तथा इसके बाहर कुछ छोटे मोटे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक रूम दिखाई दे रहा है जिसके अंदर सामने एक टेबल तथा दो तीन कुर्सियां नजर आ रही है।

उसके बाहर एक हरे रंग का छोटा सा पेड़ नजर आ रहा है।

यह एक बैंक का फोटो है। जहां पर एस बी आई योनो कैश लिखा हुआ है। तथा इस बैंक के बाहर बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

साइकिले भी दिखाई दे रही है बैंक के बाहर कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

नीचे कुछ गाड़िया भी नजर आ रही है। घर के बाहर लाइट भी लगी हुई है।

सामने एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है और जिम के अंदर दो लोग भी नजर आ रहे हैं।